दुकान में लैपटॉप रखा हुआ है और चेयर भी--

में बहोत सारा आदमी बैठे हुए हैं और खड़ा हैं।

यह एक बहुत बड़ा घर है।

यह एक बहुत ही बड़ा घर है।

कॉलेज के बाहर बहुत सारा पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है।

यह एक स्कूल है स्कूल का कलर व्हाइट और ब्लू कलर से पेंट किया हुआ है।

खिड़की भी दिखाई दे रहा है जो ब्लू कलर का है।

और आदमीन भी खड़ा है।

डिबा में बहुत सारा पौधा लगाया हुआ है।

क्यारी में बहुत सारा गमला रखा हुआ है।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

मुर्गी का कलर वाइट रंग का है।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

यह एक बहुत बड़ा मंडल डैम है।

बहुत सारा पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है।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

दुकान को बहुत सारा फूल से सजाया हुआ है।

दुकान में एक पंखा भी लगाया हुआ है जो सफेद कलर --